लेकिन यहाँ पे साफ-सुथरा जैसा की देख रहे है यहाँ पे फी ज्यादा होने के कारण एक भी बच्चा नहीं आ पाते हैं।

--और इसके बगल से एक ऐसा कॉरीडोर डिज़ाइन किया गया है जो की लोग यहां पे घूमने आते हैं यहां पे काफी अच्छे-अच्छे बगल में पेड़ भी लगाए गए हैं।

और इसकेआजू-बाजू नेचुरल प्लांट भी काफी ज्यादा है आप देख रहे है इस तरह इस शहर में एक ही है।

ये जो बिल्डिंग दिख रहा है यह प्राइवेट व्यक्ति का बिल्डिंग है जोकि इसको रेंट पे लगाने के लिए वो तईयार है और ये रोड के किनारे होने के कारण इन्हे कोई रेंट पर नहीं लेता--

जैसा की आप फोटो में सामने देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे--

यह यहाँ पे देख रहे है यहाँ पे दुकान है जो की यहाँ पे गुटका वगेरा सब मिलता है और बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी है।

यह इस शहर का सबसे बड़ा विवाह भवन है और काफी अच्छा भी है।